बस के बाजू में सजावट हुई है बस येलो कलर की है ऑरेंज कलर की है फूल लगे हुए हैं उसमें।

देख सकते की एक होटल है होटल के बाजू में देखो एक पर्दा लगा हुआ एक ए_सी लगी है कलर का--

देख सकते ये स्कूल का बैकग्राउंड है बैकग्राउंड मैदान है मैदा--

शक्ति निवास का रेलवे स्टेशन है ये रेलवे स्टेशन के बाजू में कुछ एक ट्रेन खरी है ट्रेन के सामने देखोगे कि रेलवे ट्रैक के कुछ पट्टियां रखी हुई है।

ट्रेन के बाहर देखोगे एक पटरी लगी हुई है पटरी के बाजू में देखोगे की सामने देखोगे की एक घर है मकान बहोत बड़ा उसके ऊपर दो टंकी लगी हुई है काले कलर --

एक ग्लास रखा हुआ है आजू-बाजू देखो सीट रखी हुई है देखो एक मास्टर शेफ बना हुआ है ऊपर देखो सीलिंग के सामने में एक डिशेस केश --

मजार के सामने देखो कि एक एक खड्डा हुआ है। जहां कचरा बहोत सारा गिरा डला हुआ है। आजू-बाजू देखो एक मकान है। दो तीन मकान है उसके सामने आसमान को--

देखो कि स्टेशन के बाजू में दो तीन पटरिया लगी हुई है उसके सामने देखो कि पेड़ लगे हुए ऊंचे लाइन से जंगल बना हुआ तीन चार पेड़ लगे--

देख सकते हो एक कैफे है कैफे जहां बर्गर मिलता है दो तीन सीट बैठी हुई है एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

बाजू में दो-तीन लोग है जो पीले कलर की सेट नीले कलर की सेट पहने हुए खंभा लगा हुआ जो काम कर रहा है वर्कर्स है।

गेट में सजाया न्यू टेंडर्स है बाजू में एक बाइक खड़ी हुई है जो कि एक घर है उसके सामने एक दुकान है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

पीले कलर का लाल कलर का डेकोरेशन हुआ डेकोरेशन बहुत अच्छा खासा है।

येलो व्हाइट हरे कलर का फुग्गे लगे हुए है हर जगह हर जगह फुग्गे लगे हुए है दीक म और लिफ्ट से उतरते हुए देख रहे थे छोटा सा बच्चा कार चला रहा हुआ--